इस तस्वीर में एक बोहोत बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है एवं इस मैदान पे बोहोत ही हरे-भरे वृक्ष लगे हुवे हैं यहाँ पर एक मकान भी बना हुवा है।

तस्वीर में हम एक ईसाई धर्म के धार्मिक स्थल को देख पा रहे हैं यहां पर बहुत सी रोशनी देखने को मिल रही है यहां पर बहुत सारे भरे वृक्ष लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें ईसाई धर्म के धार्मिक स्थल को देख पा रहे हैं यह देखने में बहुत ही सुंदर स्थान प्रतित होता है।

इस तस्वीर में हम एक बहुत बड़ी दूकान को देख पा रहे हैं जहाँ पर बहुत से गुब्बारे लगे हुए हैं जो की सफेद एवं काले रंग के हैं।